उसके साइड में एक और कुछ लम्बा जैसा टेंट है और यह पूरा मैदान खाली है।

यह जो दृश्य दिखाया जा रहा है। यह किसी ए.टी.एम. --

ये किसी ऑफिस या किसी दुकान का दृश्य है।

आगे की ओर भी एक पेड़ है और पीछे के ओर --

बहोत सारे पेड़ हैं और ये क्रम पूरा खाली पड़ा हुआ है।

दो व्यक्ति अपनी बाइक को लेकर आ रहे हैं।

दूसरे पुरुष की ओर उंगली दिखा रहा है।